जिसका अभी अभी कोड निकाला गया है।

यह एक ग्राउंड का तस्वीर है।

एक साइकिल भी है उसके पीछे पानी का टंकी है।

इसका दुकान का नाम मो बाइक हाउस है।

वहा पर कई रंग बिरंगे प्लास्टिक के डिब्बे हैं कार्टून हैं।

यहां पर कई सारे डी_जे बॉक्स सेट भी है और माइक भी कई सारे रखे हुए हैं।

यह एक स्कूल का तस्वीर है।

स्कूल के बाहर कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल के साइड में बैठने के लिए बनाया गया है जिस पर कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यहां मस्जिद को ब्लू कलर और वाइट कलर से पेंट किया गया है।

वह दुकान का अभी अभी उद्घाटन किया गया है जिसके बाहर कई सारे रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

उसके पीछे कई सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल में बैलून से सजाया गया है।

यहां पर एक फ्रिज है उस में केनली लिखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का तस्वीर है।

और एक रेड कलर का हेडफोन भी दिखाई दे--

वहां पर कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कई सारे बिजली के खंबे हैं जहां से लाइट उ तार पार हुआ है और एक बड़ा सा भेपर भी है।

यह लड़की का ड्रेस व्हाइट कलर रेड कलर और गोल्डन कलर का है।

यह एक फूल का दुकान है।

एक छोटा सा पहाड़ी दिखाई दे रहा है उसके बगल में कई सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक आदमी स्कूटी में है जो कि हेलमेट लगाया है।

उसके पीछे एक बड़ा सा भी दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर का है।

और सामने एक बिल्डिंग है जिस पर कई सारे कांच के शीशे लगे--

और वहां पर बहुत सारे बिजली के खंभा भी दिखाई दे रहे हैं।

जंग भी लगा भी हुआ है।

जो कि इंडिया बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

वह रेड कलर का कारपेट भी बिछाया गया है यहां पर--